जैसा कि मैं देख पा रही हूं ये एक सलून के जैसा--

तरह-तरह के क्रीम और टोनर वगैरा रखे हुए हैं।

बैनर ब्लू कलर का है और बहुत सारी ऐसी लगी हुई है।

यह एक सलून जैसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहुत सारी --

चिनी मिट्टी के बहुत सारे कप प्लेट --